हम देख सकते हैं कि यहां एक चित्र है।

और सामने कोई सिनरी भी लगी हुई--

हमें दिख रहा है इस चित्र में एक घर दिखाया गया हैं।

और बहोत ही सुंदर लग रहा है यहां घर--

और सामने कुछ रेड और ब्लू कलर के डब्बे रखे हुए हैं।

और एक एक्टिवा और एक बाईक भी खड़ी दिख रही है।

की कुछ लोग रोड पर चल रहे हैं।

और ये दोनों मिट्ठू बहोत ही सुंदर और प्यारे दिख रहे हैं।

और लड़के यहां पर अच्छा लुक देके फोटो खिंचवा रहे है।

इस चित्र में हमें एक प्लेट दिख रही है।

इस चित्र में हमें एक झोपड़ी दिख रही है।

एक सिर पे टोपी लगा के खड़ा है और एक स्वेटर पहने हुए है।

एक आदमी किसी पाइप से धो रहा--

इस चित्र में एक खाली मैदान दिख रहा है।